पानी की टंकी दिखाई दे रही है।

फ्रेम्स नजर आ रही है लाइट्स नजर आ रही है टिशू पेपर गिलास वगैरह नजर आ रहे हैं।

यहां पर एक ज्वेलरी शॉप दिखाई दे रही है।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

पानी के बीचो बीच तैर रहे हैं और बोट चला रहे हैं और पानी दिखाई दे रहा है।

यहां एक गाड़ी दिखाई दे रही है।

और कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

आसमान दिखाई दे रहा है।

जहां पर बैड दिखाई दे रहा है।

जिसके चेहरे पर ब्लर दिखाई--

दो लोग दिखाई दे रहे हैं कुछ पर्दे दिखाई दे रहे हैं।

कुछ लाइट्स दिखाई दे रही है।

कुछ घास दिखाई दे रही है।

और कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे--